जो ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं।

तथा एक सुपर रखा हुआ है एक लाइडी का पॉट दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम है जिम में बहुत सारे लोग जिम कर रहे हैं।

यह एक तलाब का दृश्य है जिसमें कीचड़ है कीचड़ में --

एक पेड़ दिखाई दे रहा है तथा तालाव के चारों ओर बड़े-बड़े मकान और अपार्टमेंट है।

और एक ट्रेन आ रही है यात्री ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं इधर से उधर घूम रहे हैं।

यह एक कुंड है कुंड के चारो तरफ दीवार है बीच में पानी भरा हुआ है।

यह एक मोटरसाइकल का शोरूम है।